यह गैरेज का गैस सेलिन्डर ये सब रखा हुआ है| अधिकतर घर-तर द्वार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं| और उसके बाद हम कार का हालत बहुत खराब है कार ना जाने का --

अच्छी तरह पे पेट्रोल पंप दिखाई गया है। पेट्रोल पम्प अच्छा दिख रहा है। टेंपू भी है उधर मालिक सब भी बैठे--

ये भैया की दुकान बहुत ही चमकदार लगती है। ये उधर बहुत सारी किताबे है। छोटा बच्चा भी किताबे --

सैलून मे नींबू-टिंबु है बाल झाड़ने के लिए सब व्यवस्था ह-- है। बाल सुखाने के लिए धोने के लिए। मशीन -तशीन कुर्सी तुर्सी सब लगी हुई है। अच्छी तरह सैलून --